ब्लू कलर के डब्बे भी बने हुए हैं ।

ये लड़कियां नाली में से पानी निकल रही हैं।

और अमोद हेयर स्टाइल कटिंग सैलून लिखा हुआ है।

मुझे लेफ्ट साइड में शेड डला हुआ दिख रहा --

कुछ-कुछ के उपर नही लगा --